यह एक बिल्डिंग है उसके नीचे दुकान है।

गेट के ऊपर एक मॉन्यूमेंट जैसा है और आजू बाजू फ्रेम्स है और बाजू मे ही देखेंगे तो विंडो दिख सकते हैं।

यह एक होटल रूम का कमरा दिख रहा है जहां पे एक बेड है उसके ऊपर व्हाइट कलर की चद्दर बिछी हुई है।

आजू बाजू लाइट है और पीछे एक पर्दा है जो दूसरे कलर का दिख रहा है।

यह एक सुपरस्टोर जैसा दिख रहा है जहां पे हेयर केयर का समान है।

यह एक बाल काटने की दुकान है जहां जो उसका नाम बाल दाढ़ी स्पा एंड सलून है जो लाल कलर का बोर्ड है।

और उसके नीचे एक आदमी खड़ा है जिसने व्हाइट कलर का टी शर्ट हाथ मे घड़ी और ब्ल्यू जींस है।

यह एक बहुत बड़ी रिवर है जहां पे एक आदमी है जो पत्थर के पत्थर पर बैठ के सीनरी एंजॉय करता हुआ दिख रहा है।

सामने ही बहोत बड़ा अ माउंटेन है और उसके ऊपर ही देखेंगे तो बहोत सारे क्लाउड्स भी दिखाए जाएंगे और--

यहां कोई एक रिलिजन का कोई फेस्टिवल दिख रहा है जहां पे एक आदमी है जो माइक में कुछ बोल रहा है और बाकी सब उसको सुन रहे है।

एक आदमी है जो फोटो भी ले रहा है आजू बाजू ग्रीन कलर के पर्दे हैं।

यहां सब आके स्विमिंग करते हैं ऊपर एक खुला आसमान है।

आजू बाजू बहोत सारे झाड़ हैं बैठने के लिए भी दिया गया है।

अलग अलग कलर के चीजे रखी गई है जहां पे लोग आके खा सकते हैं।

उन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वह एक दिया जला रहे हैं।

यह खुले आसमान के नीचे ये एक बुद्ध विहार है जहां पे बुद्धिस्ट अपना धर्म का कार्यक्रम करते हैं।

आजू-बाजू बहुत शांति का माहौल नजर आ रहा है।

पेड़ पौधे हैं ग्रास है और ऊपर एक देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई एक चीज --

यह फोटो से पता चलता है की यह बारिश का मौसम चल रहा --

यह एक कॉलेज दिख रही है जो साइंस और मैनेजमेंट स्टडीज के लिए है।

नीचे पा पूरा गेट बंद है जो एंट्री गेट है और आजू बाजू पोस्टर मारे हुए हैं।

वहां पीले कलर की दुकान है और यह गेट के सामने डस्टबिन है।

उसके आगे ही राइट साइड में एक आदमी है उसने ग्रीन कलर का टी शर्ट पहेना हुआ है।

आजू बाजू बहुत हरियाली है पीछे देखेंगे तो एक पानी की टंकी है।

मिट्टी का वो सीमेंट का वो कर रहे हैं और उन्होंने लाल कलर का कपड़ा पेहना है।

उन्होंने और एक आदमी है जिसने खाकी कलर का कपड़ा है पहना हुआ है।

और एक आदमी ने हाथ में ग्लव्स पहना है जो ये खेल खेल रहा है।

और बिग एक मॉन्यूमेंट भी है वो भी बुद्ध भगवान का मॉन्यूमेंट है।

एकदम पीछे देखेंगे तो एक बुद्धिस्ट मंदिर दिखेगा जहां पे लाल कलर के दो पिल वो पिलर्स है।

जहां पे जैन लोग अअपने धर्म का कार्यक्रम करते है।